यहां पर बिल्डिंग है और यहां पर बहुत सारे लोग इसके अंदर रहते हैं।

पहाड़ के अंदर पानी है। ओ पानी नदी बहुत अच्छी नदी गई देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है।

यहां पर ये नदी है नदी के अगल बगल पेड़ हैं।

पानी के अंदर से सब कोई देख रहे हैं यहां तो सबको अच्छा लग रहा है।

इसका बहोत अच्छा पानी है। एक एक नाव में दो दो तीन तीन लोग हैं। बढ़िया अच्छा मजा ले रहे हैं।

उनके ऊपर लाइटिंग की भी व्यवस्था है अच्छे अच्छे खंभे लगें है।

देखने में बहोत बढ़िया लग रहा है बहोत अच्छा लग रहा है।

सब कोई सामान खरीदने जाते हैं बहोत अच्छे--

हमारे यहां स्टेशन बहोत अच्छा बन रहा हैं।

और यहाँ से बहोत सारे लोग जाते है स्टेशन --

और यहां पे हमारे शारदा मैया की मंदिर हैं।

एक सागेश्वर धाम मंदिर है ये बहुत प्राचीन मंदिर है भगवान भोलेनाथ की।

बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।

हमारे यहां बस स्टैंड है पुराना बस स्टैंड और यहां पे एक मां शारदा की मंदिर है।

माधवगढ़ में बहोत सारे फॉरेनर आते हैं।

वहां सबकी मनोकामना पूर्ण होती है।

वहां साल के बारह महीना मां के धाम में भीड़ रहती है।

हम लोग से पूछते हैं अपना हाथ दिखाते हैं।

फिर भी वहां लोग कूड़ा करकट डाल के चले आते हैं।

लोग वहां दीपावली में पटाखा खरीदने जाते हैं।

यहां पर एक बिसाल फ्लेक्स है।